इस्ट्रीट लाइटें लगी हैं। तिरंगा फहरा रहा है।

यह कोई टिकट घर है।

यह एक लाठी लाठी के ऊपर चुनरी चढ़ी हुई है।

रोशनी भी हल्के हल्के आ रही है।

वाइट टीशर्ट ब्लू जींस पहन कर--

येलो टोपी लगाकर लड़का खड़ा है।

यहां पे दो लड़के खड़े हैं।

यह बहोत बड़ा मकान है इस मकान के अंदर बहुत सारे दुकान है।

इसमें लड्डू मोतीचूर के लड्डू रसगुल्ले बर्फी--

कुछ दिवाले रंगीन कलर का प ओ वॉलपेपर लगा हुआ है।

पेड़ पालो है आगे लाल कलर का घर बना हुआ है।

स्ट्रक्शन साइड है जिस पे --

के अंदर जा रहे हैं दो तीन आदमी और बोहुत बढ़िया व्यू है --

यह एक जिम है जिम मे लड़का जो है लेग मार रहा है।

ग्रे टी-शर्ट पहना है। हाथ में दस्ताना पहना है।

व्हाइट कलर का गेट है मकान है।

और एक बीच में रोड है एक आदमी खड़ा है खम्बे लगे हैं।

बहुत अच्छा व्यू यहां पे लगता है देखने में।

बना रहे हैं कुछ कला कर रहे कुछ कलाकारी दिखा रहे अपनी--

एच_पी पेट्रोल टंकी पे जा रहा है तेल भराने।

छोटा सी तोप रखी हुई है।

ये अलमारी लकड़ी की बनी हुई बहुत बढ़िया फिनिशिंग है लकड़ी की।